यहाँ पर एक पेड़ है। पेड़ के ऊपर बच्चा खड़ा हुआ है। उस बच्चे ने एक शर्ट पहनी है जो ऑरेंज कलर की है। उसके पैरो में शूज है व्हाईट रेड कलर के व्हाईट अँड रेड कलर के।

कुछ लड़के उनके आजू-बाजू खड़े है। ग्राउंड के बाजू मे पेड़ है बहुत सारे।

यहाँ पे बिल्डिंग दिख रही है बड़ी सी।